जिसमे ऑटो रिक्शा दो तीन खड़े हुए दिखाई दे रहा है एक बड़ा लोडिंग गाड़ी भी दिखाई दे रहे ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।

नीचे सड़क लाल कलर की दिखाई दे रही जिस पर दो बाइकें खड़ी दिखाई दे रही हैं दुकानो के पीछे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है आसमान में दिखाई दे रहा है।